तो पीछे मे मुझे बहुत सारे पेड़ देखने को मिल रहे है ऊपर में मुझे बहुत सारे बादल देखने को मिल रहे हैं सामने में मुझे--

एक घर देखने को मिल रहा है घर को हरा कलर से पेंट किया गया है घर के नीचे हमे--

लाइट देखने को मिल रहा है साइड में वायर देखने को मिल रहा यहां पे गिलास देखने को मिल रहा है जिसके ऊपर पानी भरा हुआ है उसके पीछे में एक बाल्टीन देखने को मिला रहा अंदर में--

गार्ड लगे हुए हैं पीछे में दीवाल देखने को मिल रहा है पीछे में छोटे छोटे पेड़ देखने को मिल रहा है पीछे घर देखने को मिल रहा है जिसे पीला रंग से पेंट किया गया।

पेंट किया गया है रोड के उस तरफ हमे एक टैम्पो देखने को मिल रहा है सामने में पोल देखने को मिल रहा है।

हमें यहाँ पे उसके बगल में बहुत सारा--

बोहोत सारा लाइट देखने को मिल रहा है राईट पे बोहोत सारे किताब भी रखे हुए है उपर में लाइट देखने को मिल रहा है वहा पे फेन है ।

पेंट किया गया है घर के नीचे बहुत सारे छोटे पेड़ लगे हुए देखने को मिल रहा है घर के शीशा में बहुत सारे शीशा लगा हुआ--

यहाँ पेड़ देखने को मिल रहा है उसके नीचे पुल पे बहुत सारे लाइट लगा हुआ है ऊपर में आसमान देखने को मिल रहा है यहां पर हमें बालकनी --

सी_टी_वी कैमरा लगा हुआ है यहाँ पर तार देखने तार के पेड़ देखने को मिल रहा है साइड में बहोत सारे--

लैब देखने को मिल रहा है लैब में बहुत सारे किताबें रखे हुए हैं और पीछे में लाइट देखने को मिल रहा है साइड में डस्टबिन देखने को मिल रहा है ऊपर फैन देखने को मिल रहा है यहाँ पे --

ये यहाँ पे जो रोड देखने को मिल रहा रोड के ऊपर मोटरसाइकिल देखने को मिल रहा है जिसके ऊपर बहोत सारा आदमी बैठा हुआ है रोड के उस तरफ हमे एक टेम्पू देखने को मिल रहा है सके ऊपर हमे--

हमे यहा पे रोड देखने को मिल रहा है रोड केवल हमे एक बड़ा सा गार्डन जेसे ट्रेन देखने के मिल रहा है ट्रेन का रंग पिला है उसके--

बगल में पीछे में लाइट देखने को मिल रहा है उसका रंग पिला है उसमे हाइड्रोलिक वाला जग देखने को मिल रहा है उसके सामने में--

हिरन देखने को मिल रहा है साइड में बाउंड्री देखने को मिल रहा है लोहे लाल रंग का है।

यहा पे रोड देखने को मिलरा बोत सारे मोटरसाइकल देखने को मिलरा है उसके बगल में हमे फॉरविलर देखने को मिलरा है।

कुछ देखने को मिल रहा है हमें यहां चेयर देखने को मिल रहा हमे टेबल देखने को मिल रहा जिसके ऊपर लैप कंप्यूटर रखा हुआ है मैं यहां पे गेट देखने तो मिल रहा जिसको --

बहोत सारे भगवान के फोटो बने हुए देखने को मिल रहा है ऊपर में हमें बहोत सारे फैन देखने को मिल रहा--

धार देखने को मिल रहा है निचे पिलर में पेंट किया गया है यहा पे वॉलीबॉल का देखने को मिल रहा है ।

सामने में हमें दीवाल पर लाइट देखने को मिल रहा है दीवाल के ऊपर हमें छड़ देखने को मिल रहा है।

दिवाल के पीछे हमे बहोत सारे पेड़ देखने को मिल रहे हैं हमें उसके यहां सामने आइना देखने को मिल रहा है हमे यहां--

यहाँ पे ऊपर में लाइट देखने को मिल रहा है दुकान के अंदर ए_ सी देखने को मिल रहा है उसके बगल में हमें भगवान का मूर्ति देखने को मिल रहा है।

जो यहां पे एक रोड देखने को मिल रहा है रोड मुझे बहुत सारे यहां पे गाड़ी देखने को मिल रहा है उसके बगल में मुझे बहुत सारे --

लाईट देखने को मिल रहा है निचे में हमे सिडिल देखने को--

बोहोत सारे टेबल देखने को मिल रहा है टेबल के उपर बोहोत सारे कंप्यूटर रखा हुआ है में दीवाल देखने को मिल रहा है।

पहले में भगवान का फोटो देखने को मिल रहा है उसके बगल में बोहोत सारे पेड़ पोधे देखने को मिल रहे है हमें यहा पे --

डिशेस रखे हुए है उसके पीछे में हमे दीवाल देखने को मिल रहा है दीवाल को हरे रंग से पेंट किया गया है उसके बगल पीछे में मुझे बहोत सारे शेल्फ देखने को मिल रहे है ऊपर भी हमे--

वेंटिलेटर लगाया हुआ है देखने पे मिल रहा है सामने में बहुत सारे लाइट देखने को मिल रहा है।

सर्विस सेंटर देखने को मिल रहा है ऊपर में हमें एल्वेस्टर देखने को मिल रहा है सामने में मुझे बहोत सारे--

सामने में हमे एक पूल देख ने को मिल रहा है जिस के ऊपर तार टंगा हुआ है उसके सामने हमे दीवाल देखने को मिल रहा है दीवाल को पीला कलर से पेंट किया गया है।